जिसमें की एक अंकल इस साइड जूता पहन के टोपा लगा के ठंडी का मौसम लग रहा है।

और हमको एक कार वाश की दुकान दिख रही है जिसमें तीन चार बाईकें खड़ी एक कोने में खड़ी हुई है एक--

दो इंसान बैठे हुए हैं एक खड़ा है कोने में।

और हमको डस्टबिन दिख रहा हैं।

इसमें हमें कोई कर्मचारी का ऑफिस दिख रहा है।

हमको ये किसी छोटे बच्चे की कोचिंग लग रही है।

अब इसमें हमको लाइट दिख रही है।

पंखा पांच में चल रहा है बहोत तेज दार--

और ऊपर फ्रिज कूलर और ए_सी और वॉशिंग मशीन दिख रही हैं।

और वहीं पर खड़े हैं सब के सब जीते हैं और ये आग बहोत तेज चल रही है।

ये कोई रेलवे स्टेशन जैसा कुछ दिख रहा है।

ये हमको गौतम बुद्ध जैसी एक आकृति दिख रही है।

वो लोड बोर्ड लगा है उनकी कई सारी प्रमाण रखे हैं जिनमें उनके मृत्यु प्रमाण भी है।

एक पानी का कंटेनर रखा है और खूब सारे खेलौने रखे हैं।

एक कॉफी वगैरा लिखा हुआ है और हमको अ इसमें टेबल दिख रहा है।

ट्रेडिंग कंपनी अच्छा ये ट्रेडिंग की कोई कंपनी मतलब एक वो क्या बोलते हैं उसको छोटासा एक मतलब कसबा टाइप में दिख रहा है।

और एक पानी की बोतल है ए_सी का रिमोट रखा है किसी के इयरबड्स रखें--

खीरे ककड़ी नींबू मूली प्याज टमाटर आलूबंडा --

और उस साइड एक और बाइक खड़ी हुई है।

यहां हमको एक जे_सी_बी दिख रहा हैं।